हर टाइप का सामान ले सकते हैं यहां पर बहोत सारे पेंट भी रखे हुए धागे भी है।

एक रेड में है ऑरेंज में है सिल्वर में है ब्लू में है और बोहोत सारे डिजाइन के कल--

यह एक मॉल है जहां पर--

दूल्हे के जितने भी मतलब कपड़े होते हैं यहां पर उपलब्ध है दुलहे के हार दुलहे के टोपी।

यह एक गली है यहां पर बहोत सारे बड़े बड़े बिल्डिंग है और यहां पर दो तीन पोस्टर भी लगा हुआ है जिस पे लिखा हुआ है की होटल जर्नी ।

यह दुकान है यहां पर कॉपी और पेन बहोत सारे रखे गए है रजिस्टर वगैरा भी प्रिंटर भी है यहां पर--

घर येलो और पिंक में नजर आ रहा है और इसके ऊपर जो लाइट लगा हुआ है वो येलो कलर का है।